जो पार्क की डेकोरेशन कर रहे हैं। पार्क को साफ सुथरा कर रहे हैं।

फार्मर्सी की शॉप है ये। यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। जय माता दी फार्मेसी --

इ जिम है जिम के अंदर सामान है। जिम का है।

बोहोत ही प्यारा मार्बल का जो है ये पुतला बनाया गया है। पार्क के अंदर बोहोत ही सुन्दर लग रहा है। बोहोत ही ब्यूटीफूल प्लस --